पार्क नजर आ रहा है जो हरे घास का बना हुआ है। सामने कई सारे पेड़ लगे हुए हैं और खम्भे भी लगे हुए हैं।

हम्म अ उसमें काले रंग के बोर्ड लगा हुआ है। सफ़ेद रंग के उससे पेंट से कुछ लिखा गया है। एक साइड एक स्टेचू है और एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। एक लड़ --

अ शब्दों में कुछ लिखे हुए है और सफ़ेद रंग का ये गेट के पास द --

दिए गए इमेज में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उसमे कोई सारे वुडन की आ कुर्सियाँ और टेबल हैं। उसी में --

दिए गए इमेज में चार लोग कुर्सियों में बैठे नजर आ रहे हैं जिनमें से दो कुर्सी खाली है जो लाल रंग की है पीछे ईसाई धरम के गॉड --

काले रंग का है। उसमें और लाल रंग से एस लिखा हुआ है और सफ़ेद रंग से ऐच.ए.आर.एम ।

दिए गए इमेज में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के इस पार फूटपाथ बने हुए हैं जो अ लाल और पीले रंग के --

दिए गए इमेज में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है। वहाँ जमीन में बड़े-बड़े घास नजर आ रहे हैं। एक तरफ बड़े-बड़े पेड़ के --

तने नजर आ रहे हैं जड़ें नजर आ रहे हैं कुछ पे एक पेड़ टूटा हुआ है। सामने एक जानवर भी दिखाई दे रहा है और घर का दीवार है उसका दरवाजा हरे रंग का दिखा --

और सड़क के किनारे के पास एक बड़ी-सी नदी दिखाई दे रही है। नदी के किनारे हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद और नीले रंग का है।